इस इमेज में मुझे एक गड्ढा दिखाई दे रहा हैं जो जेसीपी उस गड्ढे को खोद रही है। गड्डे के बाहर-- मिट्टी इकट्ठा कि गई हैं।

इस इमेज मे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग डबल मंजिला हैयहां बिल्डिंग व्हाइट और ग्रीन कलर की है। बिल्डिंग के बाहर मुझे--